चित्र एक पार्क का है जहा पर हरर --

पीछे की और एक मार्केट है शायद यह गाड़िया मार्केट इट मे आए हुए ग्राहकों की है।

यहा पर भी एक रॉड लगी हुई है और एक पैड बना हुआ है।

यह चित्र एक गुफा में से समुन्द्र का लिया गया है यहाँ पर कुछ महल बने हुए है।

यह चित्र एक तालाब का है जहाँ पर झरना बह रहा है झरना तालाब --

नीचे की औरएक हवेली बनी हुई है यहाँ पर साइड में एक क्वार्टर भी है।

है जिसमे उथल की परछाई दिख रही है ऐसा लग रहा है की स्थल दो जगह है।